यहां पर पीछे बहोत सारे पेड़ भी लगे हुए है। यहाँ पर नीचे बहोत सारी मिट्टी भी है।

यहां पर सामने एक छोटा सा सफेद रंग का मंदिर है मंदिर में छोटा सा दरवाजा है।

यहां पर एक मंदिर है मंदिर गुलाबी रंग में है मंदिर के ऊपर एक सफेद बड़ी सी लाइट लगी हुई है।

यहां पर एक ग्राउंड भी है छोटा सा ग्राउंड में हरी हरी घास है यहां पे बहोत सारे लोगो की भीड़ है कुछ लोग बैठे भी हुए है।

यहाँ पर एक गाड़ी है गाड़ी सफ़ेद रंग में है।

यहाँ पर गाड़ी के आगे एक कूट लगा हुआ है यहाँ पर रूम में बहुत सारी लाइटें लगी हुई है यहाँ पर टेबल और चेयर भी रखे हुए हैं।

यहाँ पे एक मंदिर है। मंदिर बोहत रंग-बिरंगे कागजो से सजा हुआ है। मंदिर के अंदर लाइटे भी लगी हुई है।

यहां पर बहुत सारा भूसा फेंका हुआ है यहां पर एक टोकरी रखी हुई है लकड़ी की यहां पर बहुत सारे कपड़े टंगे हैं।

यहां पर एक कपड़े की दुकान है दुकान के अंदर बहोत सारे रंग-बिरंगे कपड़े रखे गए हैं दुकान के अंदर एक व्यक्ति सफेद रंग की टी-शर्ट पहनकर खड़ा है।

यहाँ पर एक लम्बी सी बिल्डिंग है बिल्डिंग संतरे रंग में है बिल्डिंग के आगे एक लाइट वाला पोल भी लगा हुआ है।

घर पे एक छोटा सा लाइट लगा हुआ है घर के बाहर बहुत सारे छोटे-छोटे पौधे हैं।

मूर्ति के आगे एक दरवाजा लगा हुआ है मूर्ति के पीछे पेड़-पौधे और हरी घास भी है।